आस पास में बड़ी हरियाली दिख रही है ऊपर आसमान नीला और कुछ बादल नज़र आ रहे हैं आस पास में कई सारे और भी बड़े-बड़े पेड़ पौधे नज़र आ रहे है।

पानी दिख रहा है ऊपर आसमान नीला और साफ नजर आ रहा है आसपास में यह नजर आ रही है।

लोग मछली बेचते और खरीदते नजर आ रहे है एक लड़की हाथ पे ट्रे लेकर खड़ी दिख रही है।

टोपी रखी हुई दिख रही है पहनी और बोहोत सारी किताबें पढ़ने की वस्तुए रखी हुई दिख रही हैं।

सामने एक पार्क नज़र आ रही है पार्क के आस पास कई सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहैं हैं साथ ही बैठने के लिए टेबल खड़े नज़र आ रहैं है और कुछ झूले टंगे हुए दिख रहैं हैं और आसमान नीला और साफ़ नजर आ रहा है।

घाट पे सीढ़ी लगी दिख रही है और आस ही पास मे बड़े- बड़े पौधे नजर आ रहे हैं कुछ छोटे और कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं ऊपर आसमान नीला और साफ़ नज़र आ रहा है।

बाहार में तीन लम्बे लम्बे पोस्टर लगे हुए दिख रहैं हैं उनमे कुछ लिखा हुआ दिख रहा हैं ऊपर आसमान साफ़ नज़र आ रहा हैं।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

सामने एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है जिसके ऊपर रूल लगे हुए दिख रहे है सामने एक स्विच बोर्ड नज़र आ रहा है दिवार जो है वो सफ़ेद नज़र आ रही है।